यहाँ पे बहुत सारा आदमी है। जो एक सीनियर है। वहाँ स्टेज मे है और कुछ आ इन पीपल है जो बैठे है और पीछे बोर्ड लगा हुआ है।

यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। मेडिसन स्टोर या फिर स्टोर है। तो यहाँ पे बहुत सारा मेडिसन है। फेन भी लगा हुआ है। सी_सी टी_वी भी लगा हुआ है। आइ यहाँ कैलकुलेटर भी धरा हुआ है।

यह पे एक आम सर्कस हो रहा है जहां पे कुछ आदमी आए है कुछ बच्चा आया है देखने।

इ रिवर है। अ- रिवर के उस तरफ आ एक अ- टावर है जहा से टावर से तार आया है इस टावर पे।

और यहाँ पे कुछ आदमी भी है जहा बा- सिर्फ बालू है। बालू मे आदमी वहां पे कुछ काम कर रहे है।

का एक बस है और कुछ हरा हरा सा घाँस है।

और एक आदमी रेड कलर के बाइक में बैठ कर जा रहा है और कुछ आदमी वॉकिंग कर रहे है।

यहां पर कुछ ग्रीन कलर का घास भी है और यहां पर बहुत सारा गेट है और गेट मै बहुत ज्यादा ही ज्यादा डिजाइन किया हुआ है और मीनार ग्रीन कलर का बना हुआ है।